जैसा की आप देख सकते हैं ये एक ट्रेन की डब्बी है जहां पर बहोत सारे--

कूलर और कुछ नई चीजें भी रखी हुई हैं।

उसके बहोत सारे लोग सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर --

वहां पर बहोत सारे लोग रहते होंगे--

बड़े प्रकार का हं गार्डन लगा हुआ हैं जहां पे रोड के साइड में बहोत सारे--